यह एक ट्रैक्टर है और इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है।

गेट्स लगा हुआ हैऔर वह गेट --

इ कपड़े चदर लाइन से सजाई गई दिखाई दे रही है।

यह एक मस्जिद है जो की आसमानी कलर से पेंट किया गया है उसके सामने एक सड़क है

दे रही है उसमे बहोत भीड़ भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे लोग कुछ खाते-वाते दिखाई दे रहें हैं।

जो की अभी न्यू है और उसके अगल-बगल पेड़-पौधे हैं।

और इसमें लिखा है जिला प्राइवेट --

टोपी पहने है चश्मा लगाए हुए और ब्लू शर्ट --

जो की बच्चों को घूमाने के लिए लेके आए हैं इसमें --